कपडे का शॉप है इसमें साड़िया नजर आ रहे है डमी नजर आ रही है लहंगा पहने हुए डमी है सुट पहनी हुई डमी है सामने में पोस्टर लगे हुए है।

ब्लू कलर का उसमें पेंट हुआ हुवा है लाइट नज़र आ रहें है जो अभी चल नही रहे है घास है घर हैं ज़मीन है।

अपार्टमेंट्स दिखाई दे रहा है जहाँ पे एक बड़ा सा स्ट्रीट लाइट का टावर दिखाई दे रहा है और इसमें एक चीज़ पे दिखाई दे रहा है --

काम्प्लेक्स के निचे वाली बिल्डिंग में जिसमे टाइल्स लगा हुआ है।